एवं मैदान के चारों ओर ढेर सारी इमारतें देखी जा सकती हैं।

मंदिर की दीवारों पर रंग बिरंगे के चित्र एवं अलंकरण बने हुए हैं।

तस्वीर में एक कुर्सी एवं दो मेज साफ दिखाई दे रहे हैं।

चूजे एक कंक्रीट की फर्श पर खड़े हैं।

तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि कुछ साड़ी के डिब्बे नजर आ रहे हैं।

तस्वीर में किसी शहर के क्षितिज को दर्शाया गया है।

जो कि रेस्टोरेंट के द्वारा के ऊपर सफेद अक्षरों में लिखा गया--

पर होटल राधिका का बोर्ड लगा हुआ है जो लाल अक्षरों में होटल राधिका दिखाई दे रहा है।

यह तस्वीर किसी बस स्टैंड की नजर आ रही है।

यह तस्वीर किसी कार्यशाला की नजर आ रही है।

वह कार की मरम्मत करने में जुटा हुआ नजर आ रहा है।

तस्वीर में पीछे खड़ा व्यक्ति उसकी शर्ट का कलर हल्का नीला है।